ब्लैक बोर्ड लगा है ग्रीन कलर का और नीचे वाइट की फर्श है।

सूरज निकल रहा है। सूर्योदय हो रहा है और नाव पे बच्चे लोग बैठे हैं और आसपास जंगल है।

नीचे वाइट कलर के टाइल हैं ऑरेंज कलर की झंडी लगी है।